यहा पे सामने एक कमरा जैसे बना हुआ है छोटा सा और जहा पे एक आदमी है इसके हाथ मे मशीन है और यहा नीचे समान भी पड़ा हुआ है।

और सामने डोरी भी नजर आ रही है और पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ --

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहा पे सामने ब्रिज बना हुआ है।

और यहाँ पे सामने एक गेट है जहाँ से कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और साइड में जालियाँ भी लगी हुई है।